जिसमें दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में लकड़ी के बने हुए रैक दिखाई दे रहे हैं।

प्लेट सफेद रंग का है तथा उसमें काले तथे लाल रंग के डिजाइन किए गए हैं।

इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक माइक दिखाई दे रहा है।

एक तरफ छोटी खिड़की भी दिखाई दे रही है।